यहाँ पे एक नर हॉस्पिटल का बताया गया है जहा पे डस्ट्बिन रखा हुआ है नर्स है डॉक्टर है कई पर्दे भी लगे हुए है।

यहाँ पे एक बेबी का बर्थडे मनाया जा रहा है मम्मी ने फीरोजी कलर की साड़ी पेहन रखी है और कई सारी पब्लिक आई है किसी के हाथ मे गिफ्ट है।

यहाँ पे लोग इधर से उधर जा रहे है एक बैग रखा है उसमे पानी की बोटल भी है ऊपर चार टेम्पो भी खड़े हुए है दो तीन व्यक्ति इधर से उधर जा भी रहे है रोड है सड़क --

यहा पे एक लेडीस सालसा डांस कर रही है पीछे उनके पीछे वैल्कम भी लिखा हुआ है कई लोगो की जो उसने अ-अयेह रेड कलर का हार भी पहना हुआ है।

एक बोट मे तीन लोग बैठे एक लड़की हे दो लड़के हे एक नदी मे एक एक बोट वोट और चल रहे हैं।

मटके के ऊपर बाल्टी रखी हुई है एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठ कर कॉपी मे कुछ लिख रहा है गेट भी रखा हुआ एक लेडिस बाहर भी खड़ी हुई--

गैस भी रखा हुआ है। नीचे और पीछे एक लाइट भी जल रही है। हरी कलर की वो लाइटे जल रही है यहाँ पे और लाइट --